बाहर जो है मिट्टी दिख रही है और कुछ छोटी-छोटी घास भी दिख रही है ।

और सफ़ेद कलर के टी-शर्ट पहने हुए है लड़के ने लाल कलर के पहने हुई है और यहाँ पे लाइन के ऐकोडिंग इनको दौड़ लगाना है लाइन के इधर-उधर नहीं जाना है इनको।

यहाँ पर बहुत सारा सामान भी रखा है बिस्किट रखे हैं कुछ छोटे-छोटे जार रखे हैं जार में बहुत सारा समान रखा है एक फ्रीज़ रखा है फ्रीज़ के ऊपर पानी की बोटल दिख रही है हॉर्लिक्स दिख रहे --

इस चित्र में बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है जहाँ पर बहुत घने-घने झाड़ दिख रहे है हरे-हरे यहाँ पर सामने की तरफ पहाड़ी दिख रही है पहाड़ी पर बहुत सारी झाड़ दिखाई दे रहे हैं ।

इस साइड में जो है इस पूल बना हुआ है एक पूल पे एक आदमी खड़ा है इसने काला कलर की टी-शर्ट पेहनी है सफेद टोपी पेहनी है और ये जो है व्यक्ति --